बना हुआ है यहां पर एक अंकल जी हैं वह टॉपी भी लगाए हुए हैं यहां पर वो अंकल ने येलो कलर का कुर्ता और ब्लैक कलर का जैकेट पहन --

यहां पर अनेकों प्रकार के फूल हैं यहां पर पीले सफेद लाल हरे कलर के फूल हैं।

जिसके इसमें से बहुत सारा खून निकल रहा है और यहां पर मछलियों के ऊपर काले कलर से डॉट बना हुआ है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत बड़ी दुकान हैऔर नीचे वाइट कलर की मार्बल टाइल्स लगी हुई है।

और ऊपर दीवार में ऐ_सी और सीलिंग पर छोटी-छोटी लाइट लगी हुई है।

पहली मंजिल पर है मुक्ता बुक एजेंसी फर्स्ट फ्लोर और ऊपर के साइड पर एरो बना हुआ है।

यहां पर एक बोर्ड भी लगा गया हुआ है उसमें लाल कलर का बोर्ड है और उसमें कुछ लिखा गया --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक दिन का समय है और यह एक मंदिर है।

और सीढ़ियों पर मार्बल लगा हुआ है यहां पर दुर्गा माता की बहुत बड़ी सी प्रतिमा बैठाई गई है.

यहां पर टेबल पर भूरे कलर के टेबल पर काले कलर की प्लेट में रखा हुआ खाना है।